यहाँ बहुत सारे चप्पलें रखे दिख रहे हैं।

और कुछ सैंडल भी दिख रहे हैं।

जैसा कि मैं यहां देख पा रही हूं।

गैरेज के अंदर कुछ बाइक भी दिख रही है।

यहां कुछ पटाखे जलते हुए दिख रहे हैं।

यहां कुछ गाडियां भी खड़ी दिख रही है।

यहाँ बहुत सारे कोर्ट टंगे हुए दिख रहे है जिनमें से --

जिनमें से कुछ लोग बैठे दिख रहे है।

यहाँ दीवाल पर कुछ अल्बम भी दिख रहा है जिनमे --

रिक्शे पे एक आदमी भी दिख रहा है।

जिसके ऊपर फूल रखा हुआ है।

यहां बहोत सारे पौधे लगे हुए।

इस आश्रम के गेट के बाहर बहुत सारे बैनर लगे हुए हैं।

जो सादा कलर का और काला कलर का दिख रहा है।

इसके पीछे कुछ बैनर लगे हुए हैं।

जैसा कि मैं यहाँ देख पा रही हूँ।

घर में एक खिड़की भी दिख रही है।

बिलडिंग के अंदर कुछ लाइटें भी जलती दिख रही हैं यहाँ कुछ --